पत्थर के दीवार बनाई गई है और उसके सामने की फोटो ली गई है उसके साथ बहोत सारी झाड़ियां उग चुकी है और--

इसके आस पास बड़े बड़े पत्थर भी हैं और झाड़ियां उगी हुई हैं और इसके शिवाय इसमें कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है और फोटो दिन के टाइम ली गई है।

और उसके साथ एक और पोस्टर लगा है जिसमें रोड में चलने वाले--

मूर्तियां लगाई गई है और उसके सामने एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और पीछे अंधेरा सा दिखाई दे रहा है यह कही नाले के साथ--

यह फोटो एक हॉस्पिटल केस में ली गई है इसमें हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं और हॉस्पिटल के साथ एक बाइक भी लगी है।

मकान बने हुए हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं यह फोटो दिन के टाइम ली हुई है।

इसमें भी और एक कमरे के अंदर फोटो ली गई है इसमें कमरे के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है और उसके साथ तीन ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे गए हैं और इसके पीछे--

और बहुत सारे टेबल सोफा इसमें लगाए गए हैं और एक सामने खिड़की है यहां से अंदर बहुत सारी रोशनी आ रही है और उससे बाहर भी दिखाई दे रहा है।